ये अमरुद का पेड़ लग रहा है | ये पक के पीला हो चुका है | यहाँ अमरुद का पेड़ बहुत हरा-भरा है।

पीले रंग के चक्के है उसमे स चार पाँच डिब्बे --

तरबूज है नासपाती है और काली पन्नी भी है और यहाँ पे कुछ पैसे भी रखे हैं | त चक्का भी है।

यहाँ पे ब्लू कलर का एक फिसल पटी भी है |

यह देखने से लग रहा है इ शादी का बराती जा रहा है।

यह घर अभी बन रहा है | यह घर अभी नहीं बना है | यहाँ पे पाइंप है पिलर्स है करकट है | कुछ घर बने हुए हैं | हरे भरे पेड़ पौधे हैं |

गिटी है बालू है बास है कुदारी है |

उम नई स्कूल खुलने के ख़ुशी में पूजा किये हुए है स्कूल का उन्हें प्रसादी बच्चे को दे रहे हैं और बहुत सारे आशीर्वाद भी दे रहे --